यहां पर एक बडी सी बिल्डिंग है जिसके उपर कुछ लिखा हुआ है और कुछ लोग गेट से बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं।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

इस फोटो में एक नई गाड़ी जिसका रंग नीला है और गाड़ी के बगल में एक --

गुलाबी रंग के चित्र बने हुए है।

यहां पर एक मंदिर है जिसका रंग लाल और बॉर्डर का रंग सफेद है।

जिसके नीचे बहोत सारे पौधे और कुछ लोग बैठे हुए हैं।